कतना आदमी पता हो कोर्स रहतो करले कत्थक करके हमरा लगा सीखना ठीक है मतलब जा कर आउ भी सिख लाइ ठीक।

बहुत मतलब याद आब हो यार स्कूलवा के। चल एकाद दिन घूमवई सर उर से बात उत करवई।

अरे यार कतना एकदम मतलब हलिये उस समय नादान हलके यार --